और से एक खंबे के पास खड़े हुए हैं।

और मुझे यहां एक बाल्कनी भी दिख रही है जिसमें जय श्री कृष्ण लिखा हुआ है। बाल्कनी में कुछ --

मुझे लगता है कि यह बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट या चित्रकला कर रहे हैं।

मुझे यहां पर पंखा और लाइट भी दिख रही है।

बड़ी वाली दुकान खुली हुई है कपड़े वाली दुकान में दुपट्टे साड़ी वगैरह दिख रहें है।

मुझे यहां एक बोर्ड भी दिख रहा है।

मुझे यहां पर एक छोटा सा रूम दिख रहा है जहां पर टेबिल चेयर --

खिलौने रखे हुए हैं छोटे बच्चों की टेबल भी रखी हु--

पर एक बड़ी सड़क और कुछ घर दिख रहे हैं।

लोग खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं।

है जहां पर कुछ लोग दिख--

बहुत सारी दवाइयां दिख रही है।

हुए है और इस दुकान का नाम सुधा पार्लर है।

मुझे यह एक ऑफिस लग रहा--

बड़ी नदी दिख रही--

पौधे भी दिख रहे हैं।

मुझे यहां कुछ बिल्डिंगे दिख रहीं--